यह एक ही बिल्डिंग की फोटो है जिसमे कई सारी खिड़किया दिख रही है।

दीवाल पे वाइट कलर लगा हुआ है एक वाइट बोर्ड और एक ब्लैक बोर्ड हैं।

ए_टी_एम में काँच लगा हुआ है।